जिसमें कई सारे पॉट है जिसमें छोटे-छोटे पेड़ है।

जिसके ऊपर बड़ा सा पोस्टर है मादर डेरी लिखा हुआ है।

उसके नीचे छोटे-छोटे और भी पौधे हैं पत्थर है।

यह एक भवन का फोटो है जिसमें कई सारे पेड़ है छोटे-छोटे घास है।

इसमें कई सारे बुक्स हैं बड़े छोटे--

एक दो आदमी मिलकर नाव चला रहे हैं।

जिसमें एक बड़ा सा स्टेज है स्टेज के ऊपर कई सारे लाइट्स है।

दो प्लेट पे खाना है दो चम्मच है लोगों का हाथ है टिशू है।

ये एक मिठाई का दुकान है जिसमें दो लोग हैं दोनों ने मास्क पहना हुआ है।

ये एक जिम का फोटो है जिसमें कई सारे लोग जिम कर रहे हैं एक के हाथ में ब्लैक कलर का ग्लव्स है।

अंदर एक आत लोग हैं जो फ्रूट सेल कर रहा है लाइट है कई तरह के फ्रूट है बनाना है।

इस फोटो में एक बच्चा है जो गार्डन में पानी दे रहा है पाइप के मदद से--

पैरों पे उसके चारों तरफ बिल्डिंग है।

ई रिक्शा है बाइक है छोटे-छोटे दुकान है।

ये एक बेकरी शॉप के बाहर का फोटो है जिसमें--